दुकान के ऊपर डॉगी लिखा हुआ है।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

में कुछ जालियां लगी हुई है जिसके बगल में कुछ लोहे के डंडे लगे हुए हैं बारी बारी से।

यहां पे नीचे एक चेयर दिख रहा है जिसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है डब्बा कुछ दिख रहा है।

है यहां पे दो तीन चेयर दिख रहे हैं चेयर नीले रंग का है।

यहां पे दो लोहे के डंडे दिख रहे हैं जिसके नीचे दो पत्थर दिख रहे हैं।

और अंदर में कुछ बोरे रखे हुए दिख रहे हैं।

यहां कुछ खिड़कियां भी दिख रही है यहां पे कुछ ऐनक ढके दिख रहे हैं और ऊपर में लाइट बहोत सारे जल रहा है।

यहां दो तीन गुब्बारे लटके हुए दिख रहे हैं जो ब्लू रंग के हैं और ऊपर में एक छोटा सा होल दिख रहा है यहां दीवार का कलर व्हाइट किया हुआ है।

यहां बहोत सारे बगल में कुछ मिट्टियां दिख रही हैं जिसके ऊपर घास उगे हुए हैं जो हरे रंग का हैं।

और ऊपर में तीन चार तार दिख रहे हैं।

यहां पे एक नाव का दृश्य दिख रहा है।

घर के अंदर चार पांच घर के दीवार पे पिलर लगे हुए है।

पीछे में एक दीवार दिख रहा है।

ऊपर के दो हेडलाइट दिख रहे हैं पीछे में भी बहुत सारे कार है।

यहां पे बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

नीचे में थर्माकोल का बॉक्स दिख रहा है।

यहां पे क्रिसमस का पार्टी का दृश्य दिख रहा है जिसमें दो लड़की सेंटा बनी हुई है जो लाल कलर कपड़ा पहने हुई है।

मिठाईया का कलर पीले हैं ऊपर में बहुत सारे बॉक्ससे रखे हुए मिठाई के डब्बे ऊपर में एक शटर दिख रहा है यहां पे एक छपरा दिख रहा है।

यहां पे तीन बोतल रखे हुए हैं बोतल के अंदर पानी है।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

एक एक बच्चा दिख रहा है उसके बगल में एक झोला है।

एक बड़ा सा लोहे का डंडा दिख रहा है जिसके ऊपर लाइट लगा हुआ है इधर आसमान पूरा साफ दिख रहा--